यख मा जी एक बहुत बड़ू पूरा शहर कर छा यख मि जी बड़ी बड़ी कई सारी इमारत छन कई सारा मकान छन यख फणि कार छ दिखेण लगीं रोड मा जी।

यख मा जी कई सारू सामान भी छ रख्युं यख मा जी कुर्सी ऐंच छ रखीं यख मा जी एक लड़का भी छ यख मा जी नीलू और सफेद रंग भी हुयों।

यख मा जी एक झील छ या फिर एक नदी छ यख किनारा मा जी रेतु छ।

गाड का एंच बिटि एक पुल छ जाण लग्युं यख फणा कई सारा मकान छन पठाल छी का मकान छन यख फणा हरयां भरयां धाडु छा हरयां भरयां डाला छन |

यख मा जी एक नदी छ नदी का किनारे मा जी कई सारी नाव छन लगीं लाखड़ा की नाव छन यू बणी यू एक लाइन पर चलण लगीं यू का ऐंच चप्पू छन रख्यां‌।

यक मजी एक गाड़ि छ जाण लगीं। यक मजी कई सारा मकान बि छन। यक बिच्चम एक पुल छ बण्यूं। यक मजी मकानों फर कई सारी रंग बिरंगी लाइट छन जगण लगीं। यक फणी रेलिंग छन। यक फणा बल्लब छन कई सारा लग्यां।

यख बीच मा एक छोटू पुल छ बणयुं जू लोहा कू पुल छ यख फणा हरयां-भरयां डाला छन बिटु छ डालदा छन।